ये चित्र में हम देख सकते है एक बैंक दिखाई दे रहा है और वो बहुत-सी खिड़कियां भी दिखाई दे रही है एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि नीले रंग का है।

यहाँ पर बहुत से बड़े बक्से और पतीले बहुत ही रखे गए हैं और बाहर कपड़े भी डाले गए हैं बोर्ड पे लगाए गए हैं।

हमें आसमान नीला और सफ़ेद दिखाई दे रहा है और यहाँ पे एक हीरो लिखा हुआ एक --

हमलोग खाली मैदान देख सकते हैं जहाँ हम पर बहुत सारे गाड़ियां पार्क की गयी हैं और-अ बहुत सारा पेड़ भी दिख रहे हैं। दूर देखे तो बिल्डिंगे भी दिखाई दे रहे---

--और यह जो आदमी दिखाई दे रहे है और एक ओटो भी दिखाई दे रही है एक गाड़ी भी जो लाल रंग की है इसके पीछे बिल्डिंग भी--